और बहुत सारे फूल भी है।

यहाँ पे ऑटो ट्रक इधर एक आदमी भी खड़ा हुआ है जो ऑटो का फोटो ले रहा है।

प्रिंट आउट करने वाला मशीन है |

वहां पे डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं गेट खुला हुआ है।